इसके बाहर की तरफ काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं दीवाल पे शीशे का एक डोर लगा हुआ है।

कुछ रेड कलर के दिखाई पड़ रहे हैं डमरू वाले और कुछ व्हाइट कलर के दिखाई पड़ रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे कुछ जीने दिखाई पड़ रहे हैं।

एक प्लास रखा हुआ है कटर वाला बहुत सारा टेप रखा हुआ है।

कुछ पर्पल कलर के फूल और कुछ पिंक कलर के फूल दिखाई पड़ रहे है येलो कलर के फूल दिखाएं पड़--